यह एक मंदिर है और यह मंदिर बहुत ज्यादा पुराना और विशेष मंदिर है। यह मंदिर हमें बहुत ही ज्यादा ही विशेष लगता है।

ये एक ठेले की तस्वीर है। ठेले में यहाँ पर लिखा गया है। राजू चाट कॉर्नर साथ ही साथ और भी बहोत सारे ठेले नजर आ रहे हैं।

यह स्नैक बार है।